एक गड्ढा दिखाई दे रहा है गड्ढे के अंदर बहोत सारी ईंटें डली हुई है।

एक औरत किसी से कुछ लेते हुए दिखाई दे रही है एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक औरत खड़ा है जिसने हाथ में पर्स लिया हुआ है और उसके हाथ में एक पॉलीथिन दिखाई दे रही हैं एक आदमी अंदर खड़ा है जिसके नीचे झोला दिखाई दे --

और एक लड़का खड़ा हुआ है जो अपनी बोडी और मशलस बता रहा है उसने पेंट और ब्लैक कलर इनर पहनी हुई है।

बहुत सारे मोटरसाइकिल पार्क है ऊपर एक बिल्डिंग है जहाँ से एक लड़की आते हुए दिखाई दे रही है सामने एक लेडीज पर्स को टांगे हुए ग्रीन साड़ी में दिखाई दे रही है।